इसमें हमको किसी शॉप का पीक दिख रहा है जिसमें अलग-अलग कलर के डिब्बे रखे हुए हैं और साबुन-माबून रखे हुए हैं।

मोमबत्ती जलती हुई दिखाई जा रही है आजू-बाजू मे गुलदस्ते रखे हुए --

इस इमेज में हमको एक पक्षी दिखाया जा रहा है जो ब्लैक कलर का है उसकी चोंच रेड कलर की है और काफी छोटा छोटी हरी सी घास लगी हुई है।

जिसमें काफी सारे फूलों कि माला पहनाई हुई है माला पीले कलर के और और हरे कलर के फूलों से बनी हुई है ऊपर की और सफेद और पिंक कलर की माला है।